libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि डेटाबेस का अनुरक्षण कैसे करें डेटाबेस संरचना कैसे बदलें डेटाबेस को एकीकृत कैसे करें और बैकअप्स कैसे लें
database अनुरक्षण
base database के पूरे कार्यकाल में हमें data को नया विश्वसनीय और सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे
यह data संरचना में परिवर्तन और forms को अपडेट करने सहित data को नया रखने के लिए जरूरी है
library database उदाहरण पर गौर करें जिसे हमने अपने पिछले tutorials में बनाया था
इस database में शुरू में पुस्तकों सदस्यों और जारी की गयी हुई पुस्तकों पर tables थे
और हमने इस database संरचना पर आधारित अपने उदाहरण forms queries और reports बनाये थे
बाद में library को अन्य media जैसे dvds और cds के लिए विकसित किया गया
अतः हमने संरचना को नया रखने के लिए library database को परिवर्तित कर दिया
इसके लिए हमने media नामक एक अन्य table जोड़ा
और हमने इस नये media table में dvd और cd सूचना संचित की
इस प्रकार से हमारा database अधिक उपयोगी और नवीनतम बन गया क्योंकि जब आवश्यकता पड़ी हमने बदलाव किये
table बदलावों के साथ हमें उपयोग के लिए सरल बनाने के लिए forms में भी बदलाव करने की आवश्यकता होगी
या नये table संरचनाओं को समायोजित करने के लिए हम नये forms बना सकते हैं
उदाहरणस्वरुप यदि हमारे पास पुस्तकों का data दर्ज करने के लिए एक form है तो हम इसको dvds और cds के data को भी दर्ज करने के लिए परिवर्तित कर सकते हैं
यहाँ हम media के प्रकार को चुनने के लिए option buttons जोड़ सकते थे जो हैं books या dvds या cds
या हम केवल dvd या cd media के data की प्रविष्टि को स्वीकार करने के लिए बिलकुल नया form जोड़ सकते हैं
उसी प्रकार से हमें बदलने या नई queries और reports जोड़ने की आवश्यकता होगी जोकि data संरचना पर आधारित हैं वह बदले जा चुके हैं
और कभीकभी हमें मौजूदा table संरचना को परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी
उदाहरणस्वरुप members table पर गौर करें जो library के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध कर रहा है
यह अभी केवल उनके names और phone numbers को संचित कर रहा है
अब यदि हमें उनका पता और शहर की जानकारी भी संचित करनी है तो हमें members table संरचना को बदलना होगा
इसके लिए हम sql syntax इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि:
alter table members add address text add city text
अतः alter table statement table संरचना को बदलता है और दो नये columns जोड़ता है:
address और city जो text data रखेंगे
table संरचना को बनाने और बदलने पर अधिक जानकारी के लिए hsqldb org/website पर जाएँ
screen पर दिख रहे url address का उपयोग करें
आगे देखते हैं कि हम base database को इस्तेमाल के लिए विश्वसनीय कैसे कर सकते हैं
कभीकभी base को थोड़े से records को रखने के लिए अधिक memory की आवश्यकता होती है
ऐसा इसलिए क्योंकि base पूर्वानुमान करता है कि database को एक निश्चित मात्रा में memory की आवश्यकता पड़ सकती है
और data जिसे हमने tables में data वह बिलकुल उसी क्रम में संचित नहीं होते हैं
क्योंकि हम विभिन्न समय पर tables में data जोड़ते हैं उनका असली संग्रह विशिष्ट क्रम में नहीं होता
हम table data के लिए सूचियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि हमने पुस्तकों की library के लिए तालिका इस्तेमाल की थी
तालिका केवल पुस्तकों को सूचीबद्ध नहीं करती बल्कि उनका वास्तविक स्थान भी संचित करती है
उसी प्रकार से हम कुशलतापूर्वक data को locate करने के लिए table सूचियाँ बना सकते हैं
किन्तु सूचियाँ भी बहुत सारी memory लेंगी
और कभीकभी table data को डिलीट करना data को पूरी तरह से नहीं निकालता है
वह केवल table सूचियों से अलग हो जाते हैं किन्तु तब तक जगह घेरते हैं जब तक उस जगह के लिए नया data न जोड़ें
अतः इसलिए database का size बढ़ता data है जबकि असली संचित data हो सकता है कि ज्यादा बड़ा न हो
base फिर से रखने के लिए defragmenting नामक बहुत ही अच्छा तरीका प्रदान करता है
इसके लिए हम database खोलेंगे जिसे डिफ्रैग्मेंट करने की आवश्यकता है
पहले libreoffice base window के अंदर पहुँचकर हम tools menu पर click करेंगे और फिर sql submenu पर click करेंगे
और sql window में निम्न command type करें
checkpoint defrag
यह sql command base database file से अवांछित सूचना को हटाता है
यह पहले database को बंद करेगा data को पुनःसंगठित करेगा और database को फिर से खोलेगा
अब हम sql window में एक और command इस्तेमाल कर सकते हैं
shutdown compact
इसमें एक अंतर है कि यह command database को फिर से नहीं खोलेगा
defragmenting पर अधिक जानकारी के लिए hsqldb org के chapter 11 अध्याय पर जाएँ
अंततः backups के बारे में बात करते हैं जो database को सुरक्षित रखने में मदद करता है
हम अपना database इनकी वजह से खो सकते हैं
computer अचानक खराब होने से हार्डडिस्क drive टूटने से या viral खराबी से
libreoffice में अच्छी recovery wizard है जो data नाश को कम करता है
किन्तु अच्छा है कि आप database का समयसमय पर backups रखें
और बैकअप लेना बहुत ही सरल है
हमें केवल database फाइल को copy करने की आवश्यकता होगी
और इसे किसी दूसरे संचयन माध्यम से संचित कर लें जैसे कि बाहरी hard disks या cds या dvds या flash drives
अतः library database का बैकअप लेने के लिए पता करें कि library odb file कहाँ so है
और फिर file को दूसरी hard disk drive या flash drive में copy और paste करें
अब यह copy और paste कार्य पूरे database के बैकअप का संरक्षण करता हैः
इसके सभी data संरचना data forms queries और reports के साथ
हमें कितनी बार backups लेने की आवश्यकता है
यह निर्भर करता है कि कितनी बार database data या अपनी संरचना के सम्बन्ध में बदलता है
मतलब कितनी बार हम data जोड़ते है बदलते हैं या मिटाते हैं
और कितनी बार हम table संरचनाओं forms queries या reports को बदलते हैं
अतः database के इस्तेमाल की बारंबारता पर आधारित हम प्रतिदिन या साप्ताहिक backups नियत कर सकते हैं
यहाँ एक नियत कार्य है
address और city दो नये columns को जोड़ने के लिए members table को बदलें
दोनों columns को data type text रहने दीजिये
साथ ही data entry mode में members table को खोलें और कुछ नमूने के तौर पर address और city data mode
अगला library database का defragment करें
अंततः library database का बैकअप लें उसे flash drive या दूसरी hard disk drive में संचित करें यदि मौजूद है
इसी के साथ हम libreoffice base में database अनुरक्षण के इस tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा कि कैसे:
एक database का अनुरक्षण करें
database संरचना बदलें
database defragment करें
और backups लें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
यह project